बहुत ही पेड़ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

कुछ लोगों ने मास्क भी पेहना हुआ है।

यह तस्वीर मानो ट्रेन से खींची हुई नजर आ रही है।

बाज़ू पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

ऐसे लग रहा है जैसे यहां पे कोई फंक्शन चल रहा है।

जो आके अ फूलों की सजावट कर रहे यह एक स्टेज जैसे लग रहा है।

महिला ऊपर आते हुए नजर आ रही है।

बहुत सारे ग्रिल के अ ये लगे हुए हैं।

यह तस्वीर एक बाइक सर्विस की लग रही है।

काफी सारे लोग वेटिंग लिस्ट में है।

तस्वीर एक बस स्टैंड की है।

यह तस्वीर एक सीनरी जैसे लग रही है।

इस तस्वीर में काफी सारे रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं।

टीचर भी दिख रही है।

जहां पे एक ड्राइवर और एक कंडक्टर भी दिखाई दे रहे है।

आमने ट्रेनर योगा सिखाते हुए दिखाई दे रही हैं।

यहां काफी लोग खरीदते हुए नजर आ रहे हैं।

सामने एक रेलिंग भी दिखाई दे रहे हैं।

बाजू एक और बंदा खड़ा है उसका सिर्फ हाथ नजर आ रहा है।

नीली कलर के शर्ट का आदमी भी बैग ले के जा रहा--

जहां पे चार लोग अ दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर एक जिम की नजर आ रही है जहां पे बहोत सारे इक्यूमेंट रखे हुए हैं।

यहां एक मेन रोड भी है जहां पे ऑटो और कुछ गाड़ियां दिख रही है।